कुछ पटरी है जो कि चारों तरफ फैला हुआ है बीच मे हरा घास है बिजली का खम्बा है।

बगल मे कुछ घर है ऊपर में बिजली का खंबा है।

रूम मे टेबुल है ब्रेंच है पानी पीने वाला जग है और रूम का कलर उजला है बगल में मीटर लगा हुआ बोर्ड लगा हुआ है बिजली का।

एक होटल है होटल के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है बगल में लाइट लगा हुआ है बाहर में एक कार खरी है कुछ लोग है होटल में कुछ लोग बैठे हुए है कुछ लोग खरे हैं।

नदी है नदी के बगल में पहाड़ है और जंगल है पेड़ भी है देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है पानी पूरा हरा दिख रहा है।

स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है बगल में ब्रिज है इसी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए ऊपर में बिजली का खम्बा है।

ये जंगल है जंगल हारा हे|

एक विद्यालय का गेट है जो कि पोस्टर में उजला कलर का पैंट है।